ये एक शायद महजीद का कमड़ा है जहाँ पे एक ऑरेंज कलर का अलमीरा है और नीचे में रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

तीन पालकों लाइट है और एक बीच में भी कोई लाइट है और डी_जे --

इसके अगल बगल में दो तीन छोटा छोटा पौधा लगा हुआ है।